एक बुक क-क स्टेशनेरी है जहां पर अंकल बैठे हुए है और बहुत सारे किताबे हैं।

-- मे फोटो क्लिक करा रहे है और बगल में एक कार खड़ा हुआ है बहुत सारा लाइट्स वगेरा लगे हुए है।